यहाँ बहुत सारी टेबुले - उबुले लगी है बैठने के लिए जगह काम आती है यहाँ पे एक जंगल टाइप का दिख रहा है इसमें कुछ अजब तरह का फूल बरसे हुए हैं यहाँ कुछ पशु वगैरा देख रहे है यहाँ जो चरते हुए का नज़ारा --